पंखा ऊपर लगा हुआ है और वो तोलने की मशीन लाल-लाल टैब है।

ये सब्जी का कुछ दिख रहा है भिंडी है।

एक बोहोत बड़े साइज़ का कछुआ है जो लगता है रेंग रहा है।

यहा पर टैक्सी है बहुत सारी और ये पाँच छै गाड़ी दिख रही है सामने की ओर दुकान है।